जंगल -जंगल झाड़ी है काफी खूबसूरत बहुत ही अच्छा माहोल है यहाँ पे लग रहा है कि एक दो बार हमलोग भी जाए--

काफी अच्छे से और यहाँ भीड़ -भाड़ है जो कि आम आदमी लोग भी बहुत सारे जाते है सीटी के लोग भी जाते है काफी अच्छा लगता है यहाँ पे जाने के बाद खूबसूरत जगह हैं।

ऊपर में काफी अच्छा चौतरा और बहुत सारा आदमी लोगों का घूमने का जगह बनाया गया है बहुत सारा यहाँ पे उपलब्ध--।